और शायद ये नर्सरी ही है या नहीं तो एक एक जंगल हो सकता है।

अंदर एक बंदा अपना कैश निकाल रहा है एटीएम कार्ड से और बाहर गेट पे एक बंदा खड़ा होके----

ये एक ऐतिहासिक पैलेस लग रहा है।

ये एक पीपल का पेड़ है और इसके जस्ट पीछे एक सेंट्रल बैंक की तरह-----

और ये बहुत सारे क्राउड है।

रेड कलर का एक छोटा सा कुर्सी टाइप का लग रहा है।

आधार सेंटर पर बहुत सारे सरकारी काम होता है।

ये इमेज एक हॉस्पिटल का है इस हॉस्पिटल का नाम------

ये कॉलोनी टाइप का लग रहा है बहुत सारे बिल्डिंग्स हैं बहुत सारी गाड़ियां हैं।